और लाइटें जल रही हैं और छोटे छोटे से लकड़ी के कबार्ड बने हुए हैं। काले कलर की कुर्सियां लगी हुई हैं।

और इसमें क- काले रंग के भी गेट दिखाई दे रहे है जो लोहे के बने हुए है। इसकी बाउंड्री वाल ब्लू कलर में दिखाई दे रही है और इसमें हरे अंदर पेड़ और पौधे दिखाई दे रहे है।

और एक लड़का मुझे पहाड़ की चोटी पे दिखाई दे रहा है और एक लड़का मुझे उसके पीछे सफ़ेद कलर की टीशर्ट में भागते जाते हुए दिखाई दे रहा है।